यह चित्र शाम का टाइम के बा जब बेरा डुबेला नु औइ बेरा के बा दुगो नारियल के पेड़ बा।

आई बड़ा स्पीड का गाड़ी चला लजान एमें हमनी घूमेनि सब --